कुछ दिखाई दे रहा है उस से व्यक्ति सफेद रंग की पोशाक पहने हुये है जे नोक पर एक-एक ह खड़े हुए है पीछे की तरफ उनके फादर कुछ पढ कर बता रहे है और सब हाथ बांधकर उसे सुन रहे है।

सामने मकान बने दिखाई दे रहा है। आसपास अ हरे पेड़ हरे अ हरे भरे पेड़ और पुराने गुलाबी रंग के फूल बहुत सुंदर लग रहे है। दो मंजिला --

इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति सफारी सूट पहने खड़ा है मास्क लगाए तीन बड़े-बड़े सिलेंडर रखे नजर आ रहे हैं।